चित्र मे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और बगल मे एक बेंच दिख रहा है जिसपर एक इंसान बैठे हुए है सामने एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

सामने बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर खुला आसमान है।

एक इंसान के पास छत्री दिखाई दे रही है।

बॅलर्स दिखाई दे रहे है और एक बडीसी खिड़की दिखाई दे रही है।

चित्र मे एक इमारत दिखाई दे रही है जिसके सामने दो गाड़िया दिखाई दे रही है।

जिधर एक इंसान खडा है सामने एक हेल्मेट पड़ा हुआ है अगल-बगल बड़े-बड़े पेड़ है ऊपर खुला आस्मान है।